अ एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जोकि क्रीम कलर में है | क्रीम के साइड में हमे बिल्डिंग के साइड में हमें बहोत बड़ा एक गार्डन दिख रहा है जोकि हरे --

इस चित्र में हमे एक मंदिर दिख रहा है जोकि बहोत सुंदर है जिसके अंदर एक मूर्ति दिख रही है जोकि एलीफन्ट की है ।

वो नीला है और उन के ऊपर लाइट लगे हुए हैं जोकी रेड कलर में है साइड में एक दिखाई दे रही है जोकी वाइट कलर में हमें दिख रही है।

उसी के साथ साइड में चार से पाँच बाइक है जो की पार्किंग किये हुए हैं| उसी के साथ यहाँ पे बीस से चालीस कार खड़ी हुई है जोकी पार्किंग --

एक बहुत बड़ा घर दिख रहा है।